यह एक फैमिली ढाबा कम रेस्टोरेंट है दिलासी--

इस तस्वीर में सोलर प्लेट घर के ऊपर में है।

इसमें इस तस्वीर में बहोत सारे इंसान है।

ये एक हेल्थ केयर सेंटर है।

यह तस्वीर में इंसान फोटो खिंचवा रहा है।

इस तस्वीर में हरियाली बहुत ज्यादा है।

इस तस्वीर में बहोत सारे पेड़ और इंसान गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

यह इस तस्वीर में लैपटॉप एवं चार इंसान हैं।

इस तस्वीर में इंडिया फ्लैग जैसी बैलून है बहुत सारे।

इस तस्वीर में नदी छोटा सा बहता जा रहा है।

इस तस्वीर में छोटा सा नदी के ऊपर थोरा लैंडस्लाइड हुआ है।

इस तस्वीर में दो चेयर और एक काउंटर एक क्यू_आर कोड है।

इस तस्वीर में बैग बहुत सारे हैं और ये बैग ज्यादातर महिला खरीदते हैं।

चश्मा पहना इंसान मुस्कुरा रहा है और उसने कुछ ताबीज पहना है।

इस तस्वीर में फ्रेशर्स लिखा है।

इस तस्वीर में सिढ़ी और बुक्स बहुत सारे हैं इस तस्वीर में दो इंसान दिखाई दे रहे हैं।